दुकान के बाहर एक आदमी अपने हाथ से दुकान के ऊपर साफ करते हुए दिख रहे हैं जिसके हाथ में एक बड़ा-सा डंडा है।

और अ ढेर सारे आदमी इधर से उधर जा रहे हैं जोकि एक सड़क है यहाँ पर।

यहाँ पर एक बिल्डिंग में बोहत सारे बांस को रस्से से एक-एक करके बांध के ऊपर तक ले गया-गया है।

वाइट बिल्डिंग को का फूलो से सजाया गया हैं आगे में गमले फूल का सजा हुआ हैं।